यह दस दशाश्मेध घाट की तस्वीर है। यहाँ पे माले की दुकान है। उन सामान की दुकानें भी हैं। यहाँ पे शाम को आरती होती है।

रंग बिरंगी कई अच्छी अच्छी किस्मों वाले फल की दुकानें हैं।

यह बनारस में स्थित सारनाथ की तस्वीर है। यहाँ पे कई इमारतें हैं।

और यहां पर घास भी है। हरी भरी घासें बाग़ बगीचे बड़े बड़े पेड़ भी हैं।